एक नदी है नदी पे बहोत सारे नाँव हैं नांव के ऊपर बहोत --

हल्का ब्लैक दिख रहा है अगल बगल धुंधला दिख रहा है बगल पे बहोत पेड़ हैं।

घर खड़ा हुआ है अगल-बगल कचड़ी पत्थर बहुत बड़े-बड़े हैं।

बगल में सूर्य उदय डूब रहा है नदी पे पत्थर दिख रहा है अगल बगल हरे भरे पेड़ हैं।